रेड कलर की पु पुताई हुई है। ओ बड़े बड़े गेट हैं। एक गेट है। फिर इससे आगे गेट है। साइड में सेफें लगी हुई हैं। सेफें लगी हुई तखत रखे हुए हैं।

पेड़ पे पहाड़ी है काफ़ी ऊंची पहाड़ी है जिस पर सूख जहाँ सूखे पेड़ भी लगे हैं पत्ते नहीं है वायर जा रही है आसपास काफ़ी बड़े बड़े पेड़े हैं छोटे छोटे पेड़ है ग्राउन्ड है।